दीवार का कलर व्हाइट है और यहाँ पे कुछ और वगैरा भी लगे --

यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स वगेरह भी रखे हुए हैं।